पीछे टायर लगाया गया है दो-दो आगे भी लाइट लगा इंडिकेटर भी लगाया गया है बीच में सीट भी लगाया गया है और बाजा भी लगाया गया है और नीचे भी पकड़ने वाला ऊपर लगाया गया है ऊपर समान रखने वाला भी लगाया गया है रा रॉड भी लगा --

बैटरी वाली गाड़ी है। आगे टायर लगाया गया है पीछे भी टायर लगाया गया है। हंडिल है लाइट भी है। शीशा भी है। बैठने वाली सीट भी है। पकड़ने वाली है ऊपर से। पीछे ऊपर रखने वाले सामान भी बीच में रखने वाले भी हैं ऊपर भी रखने वाला है।

बीच में जंगले है बगल में भी जंगले है कट्रेन है खंबे भी है ऊपर भी लाइट लगाया गया है नीचे भी लाइट है बीच में भी लाइट है।

का मंदिर है। गणेशजी का पार्वतीजी का गणेशजी का श्रीकृष्णजी का। आगे रेलिंग है। रेलिंग के ऊपर कपड़ा रखा है। उनके चुनरी ओढाया गया है। पीछे --

के घर में पूजा की सामग्री में पेड़ पोधे ल पेड़ पोधे नहीं है यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है कृष्ण जी का मंदिर है।

एक मंदिर आगे जंगला है। इसमें घंटी लगाया गया है। बजने वाली घंटी है और पीछे मंदिर है। भगवा कलर से रंगा गया है सफ़ेद कलर से रंगा गया है।

यह एक स्कूल है उसके पास छट्ठी घाट है मंदिर में मंदिर में छट्ठी घाट भी है पेड पौधे फील्ड और हारा रंग से रंगा गया है खम्बे हैं पीले रंग से खम्बे रंगे गए हैं |